एक लड़का चाय पी रहा है। चाय दे रहा है और चाय कप के अंदर काम कर रहा है। साइड में कैमरा लगा है। पड़ी हैं पंखे पड़े हैं।